यहां पर बहोत सारी औरतें भी आई हुई--

यहां एक टेबल भी रखा है जिस पर कुछ न्यूजपेपर रखे हुए हैं और यहां--

और यहां कई सामानो के डब्बे भी--

इसमें बहोत सारी कुर्सियां और टेबल रखे हुए हैं।

सफेद रंग में कुछ लिखा गया है यह--

यहां पर बहोत ही साफ सफाई--

और यहां कई स्कूटर और बाइकें भी--

और यहाँ बहोत सुंदर भी है जिसमें बहोत सारे पौधे लगे हुए है।

बहोत सारी खिड़कियां भी लगी हुई है।

ये साइकिल बड़े बच्चों की हैं।

इनका रंग पीला नारंगी--

बच्चों ने पीली टी शर्ट पहन रखी है।

दो बच्चे हाथ में कैंडल लेकर खड़े हुए हैं यहां पर--

और यहां बहुत सारी लाइटे जल रही --

और उसकी दीवारें लाल रंग की है।

ये तस्वीर एक प्लांट की है उसमें बहोत सारी ईंटे पड़ी हुई हैं।